एक दो तीन चार मंजिल का बना हुआ है उसमे कमरा है लिफ्ट है चढ़ने वाला फिर लाल रंग --

एक आदमी टोपी पहने हुए हैं एक आदमी हाफ पैंट है लाल टीशर्ट है एक आदमी टोपी पहने हुए हैं टीशर्ट पहने हुए सुगा पंखी कलर का हाफ पैंट है।

बाल है जल रहा है एक दो तीन चार पांच छः और इंजन है उधर बोर्ड लगा हुआ है।

टेबुल के चारो साइड कुर्सी लगा हुआ है कुर्सी है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस अलमारी है।

हम देख रहे हैं इस फोटो में की एगो आदमी है चेक शर्ट पहना हुआ है हाथ में कटोरा है।

टोपी पहना हुआ है | टोपी पे लिखा है बी ओ वाय बॉय | हाथ मे भी जूता पहना हुआ है फिर एक हाथ पर जूता पहना हुआ है | उसके पीछे कपड़ा रखा हुआ है कपड़ा लाल रंग --